यह बहुत सुंदर मंदिर दिखाई दे रहा है।

यहां बहोत बड़ा खेत खाली नजर आ रहा है।

और फिर से दिखाई दे रही हैं।

यह पुल के नीचे गौशाला बना रखी है।

यहां एक कंपनी सी नजर आ रही है।

एक नीले नीले रंग का दरवाजा भी है यहां बहोत से गमले भी रखे हुए हैं।

यहां बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर बनती हैं श्री राम की हनुमान की।